ये एक फिटनेस क्लब हैजहां पे देखेंगे कि एक रिसेसप्शन एरिया है यहां एक लकड़ी का काऊन्‍टर रखा हुआ है उसके पीछे एक चेयर लगी हुई है सामने एक कांच लगी हुई है और अन्‍दरग्रीन कलर की मैड बिछी हुई है और कैमरा लगे है।

वाइट कलर का पेंट हुआ है पूरे में काफी सारी फोटोज लगी हैं बलून चिपके हुए हैं और यहां सोफा रखा हुआ है।

लाईट लगी हुई है सामने यहाँ पे दो लोग भी दिखाई दे रहा है रेड कलर की चेयर रखी हुई है एक कूलर भीरख हुआ हैऔर ऊपर टी_वी भी रखा हुआ है।

ये एक हॉस्पिटल है जहां पे देखेंगे फट्टे पे रेड कलर पेंट हुआ है और उस के बीच में ब्लू कलर कांचें लगी हुई हैं।